एण्ड आप उस के साइड में पीछे की और देखेंगे तो आपको एक दूसरी बस भी नजर आ रही होगी जोकि रेड कलर की है।

एक सामने की ओर देख रहा है और एक पीछे की ओर देख रहा है एण्ड आप उस के पीछे देखेंगे तो अपको ग्रीन कलर की बस दिखाई दे रही होगी। व --

जिसने रेड कलर की टीशर्ट और आप देख सकते हैं बस में अंदर की ओर एक आदमी चड़ रहा है।

गाइज़ जैसा की आप देख सकते है ये रोड के बाहर का व्यू है एंड ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे एक आइस क्रीम पार्लर है एंड बहुत सारे लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं।

पीछे देख सकते हैं आपको एक तिरंगे झंडे का भी व्यू दिख रहा होगा।

देख सकते है यहाँ पर फ्लावर भी रखी है आरती भी हो रही है ।

हैलो गाइस आप देख सकते है ये छत का व्यू है यहाँ पर कंट्रक्सन का वर्क चल चल रहा है आप देखेंगे की यहाँ पे दो आदमी दिखाई दे रहे है एक लेफ्ट एक साइड में दूसरे साइड में खड़ा है।